मुझे इस तस्वीर में दवाई दुकान दिख रहे है बहुत सारे सिरप और मलहम भी दिख रहे है।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

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है और हॉस्पिटल के ऊपर मे बहुत सारे पंखे भी सड़ रहे है ।

टमाटर हे गाजर हे सीताफल हे चिंडा हे फूलगोभी हे कुंदरू हे सेमी हे मिर्ची हे पत्तागोभी हे फूलगोभी--

और तालाब के ऊपर में--

मशीन वाला किलो वॉट दिख रहे है और लॉलीपॉप भी दिख रहे है पन्द्र -सोलह ठो एक ठो डिब्बा में--

छत्तीसगढ़ डेटल केयर लिखाया जात का अस्पताल--

अहो मो लिखाया छत्तीसगढ़ डेटल के वर--

मुझे इस तस्वीर मे बहोत बड़ा तालाब दिख रहा है।

पर मिट्टी फटा -फटा दिख रहा है. और--

और आगे में बड़ पौधे देखते हैं।

लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल फाइव लेवल सिक्स टेन तक है।

टेबल और एक खुर्सी और उसके ऊपर में एक ठो छोटा सा टिफिन --

और उसके आगे में एक ठो केले का पेड़ भी है।

लोग बहोत ही अलग-अलग कपड़े पहने है।

कलर का बल्ब जल रहा है।

खेत खनीयर देख रहा है और पेड़-पौधे भी देख रहे हे बहोत ही हरे-भरे देख रहे हो दोपहर का समय है।

आगे में एक ठो मोटर साइकिल है और हीरो होंडा है और खुर्सी पे एक ठो एक--

दूसरा आदमी पैदल चल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक पक्का का मकान दिख रहा है और एक

सरकार लिखाया हुआ है और नीचे में और एक ए.टी.एम. लिखाया हुआ और हेल्प सेंटर लिखाया हुआ है।

और उसके आगे में छोटा-छोटा--

आगे में एक पुरुष पत्थर में बैठ कर फोटो खींचाया है और बहुत ही सुन्दर--

दो दो पुरुष खड़े हो कर देख रहे है और--